सामने उसके घास उगा है इसके भी सामने घास उगा है बगल में भी बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं एक छोटा पेड़ लगा हुआ है एक खंभा लगा हुआ है जिससे तार गए हुए हैं।

बगल मे पेड़ लगे हुए है कुछ छोटे-छोटे और उसके बगल मे बड़ा पेड लगा है पर्दे डले हुए है परदे रेड कलर के है उसपे डिज़ाइन बना हुआ है और अंदर के परदे भी सफेद कलर के उनके लाइटिंग की चक्कर मे व आसमानी कलर के दिखाई--

पीछे पेड़ लगे हुए है सामने एक गुलगस्ता टंगा हुआ है फूल फूलों का और तरबूज़ रखे हुए है सड सड़क-सड़क का रंग सलेटी हैसाम--

सामने एक गुंबद सी बनी हुई है बगल में एक गाड़ी का शीशे में फोटो आ रहा है।

दूसरी सड़क पर पानी भरा हुआ है एक रेलिंग लगी हुई है नीचे उसका पीला उजाला हो रहा है सामने एक खंभा लगाया बादल खुला हुआ है।

बस हैं जो की रेड कलर की है उसकी बगल में एक गाड़ी गुजर रही है वह स्लेटी कलर की हैं चारों तरफ टेंपो ही निकल रहे हैं एक पीले कलर का टेंपो भी निकल रहा है।

डिवाइडर मे पर लोहे का वो बना हुआ है इस डिवाइडर का रंग वाइट और काला है बीच में मिट्टी डाली हुई है ऊपर लाईटे लगी हुई है ये एक और बिल्डिंग बनी हुई---

और जमीन पर कन कचरा डला हुआ है यह पीछे डस्ट्बिन रखी हुई है जुमर टंगे हुए है और हरे पत्तो के सफेद फूलों के उधर भी --

गार्डन है जिसमें उनमें लकड़ी के पीछे दीवार बनी हुई है कुछ लोग ख खड़े हुए है एक आदमी ने लाल कलर की शर्ट पहनी है और काउंटर सुनहरे रंग का है उसपे --

जमीन पर बहुत सारा पानी डला हुआ है जमीन पर काई भी लगी है और एक सड़क पर थोड़े थोड़े --

नई-नई गोबी रखी हुई है एक बंद गोबी है एक खुली गोबी है और लाल कलर की मिर्चीयाँ रखी हुई है और बटा रखी हुई है लोगी रखी हुई है।